मम है डॉक्टर है और यहां --

घूमने के लिए आते हैं और खेत पे धान रोपा गया है और किसान को बहुत मेहनत लगता है धान रोपने --

यह एक भारतीय स्टेट बैंक का फोटो दिखाया जा रहा है।

खड़े है बहुत अदमी का यहाँ भीड़ है और यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत आदमी पंद्रह अगस्त की तैयारी कर रहा है।

सैलून का फोटो दिखाया जा रहा है यह सैलून में बहुत आदमी बाल कटवाने के लिए फेशियल करवाने के लिए --